यहां पर देखिए ये कैनरा बैंक है साथ में इसका यहां पर साइड में मैथ की क्लासेस वगैरह हैं ये बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं है।

देखिए यहां पर कोई वगैरह यहां पर सवा वगैरह हुई है मतलब कोई पुराने आदमी के ऊपर यहां पर श्रद्धांजली वगैरह भी दी गई है यहां पर ये हमें ज्ञान वगैरह दे रहे हैं।

देखिए यहां पर ये कोई मोबाइल शॉप है लगता है ये अपने मोबाइल वगैरह को दिखा रहा है मोबाइल फोन से हमारी जिंदगी बहुत इजी बहुत बढ़िया हो गई है।

पूजा करने आए हुए हैं लोग अलग-अलग मिष्ठान वगैरह लेकर यहां पर बहुत बढ़िया --

मतलब अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी चीज से आप कितना बढ़िया ये मतलब नजारा यहां का कितना बढ़िया है और पानी भी बहुत हल्का-हल्का चल रहा है मतलब बहुत --

इसलिए सब लोगों की छुट्टी हुई है अपने-अपने वाहनों के पास जा रहे हैं सब अपने-अपने घर जाएंगे जनलेस ये कितने खुश हैं इनका पेपर मतलब --

वाओ ये तो बरफीला नजर आया यहां पर स्केटिंग करने में स्किंग करने में बोहोत ज्यादा मजा आ रहा है। देखिए गाइस यहां पर पिकनिक वगैरह भी लोग वाग कर रहे हैं स्किन कर रहे हैं।

देखिए गाइस ये एक पार्क है ये यहां पर बीच में इसके एक फोर्म है।

ये जहां पर पानी फ्लो तेज होता है ये वहां पर की जाती है और इसे करने में बहुत ज्यादा मजा आता है जैकेट पहन ली जाती हैं जिससे ये हमारी सुरक्षा --

ये यहां पर लोग यहां से पेस्टडीस बर्गर वगैरह आराम से स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं और ये बहुत फायदेमंद होता है इमरजेंसी के लिए कभी खाना नहीं मिलता इसलिए --

और इतनी सारी नमकींस यहां पे वाओ इन्हें तो देखकर मुंह में मेरे पानी आ रहा है इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा अगर ये मिल जाए --

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और यहाँ पर डेकोरेशन हुई भी है। कितनी बढ़िया तरीके से इनका सिस्टम अलग ही होता है थोड़ा।

और अंदर मुझे लगता है ये मार्केट वगैरह थोड़ी सी शायद ये कोई हॉस्पिटल वगैरह है जिसका मतलब वेटिंग रूम में सब अपने लोग पे वेट कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया --